इसमें नई इलेक्ट्रिक ऑटो को एजेंसी से निकला गया है।

एजेंसी के सामने एक ब्लू कलर का स्कूटी भी लगाया हुआ है।

जिसमें सफेद फूलों का यूज करके--

सामने एक बहुत बड़ा सा सोफा लगा हुआ है।

यहां एक सिंगार का दुकान दिख रहा है।

यहां एक घर का काम चल रहा है।

जिसका कलर सफेद और लाल है।

इसके बगल में और कुछ प्लास्टिक रखा हुआ है।

इसके बगल में एक छोटा सा इमारत दिख रहा है।

टायर को रखने के लिए पाइप का रैक बनाया गया है।

यहां एक नदी दिख रही है।

और इस नदी में भी पानी लगा हुआ है।

बोर्ड का कलर सफेद और ब्लू है घर में लगाए हुए दरवाजा और खिड़की का कलर कथा है।

यह एक ऑफिस का गार्डन लग रहा है जिसमें बहोत सारी हरे हरे पत्तियां लगी हुई है।

यहां एक पार्क दिख रहा है।

हर गेटों का कलर --

और एक सामने से एक बाइक पे दो लोग जा रहे हैं।

यहां कोई फंक्शन लग रहा है जिसमें बहोत अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है।

इस पार्टी को गुलाबी और सफेद फूलों से सजाया गया है।

यहां पर एक खूबसूरत सा घर सजाया गया है।

जंगल के आजू बाजू में बहोत सारे--

और इस दुकान में एक आदमी खड़ा हुआ है।

इसके फर्श का कलर लाल है।

और इसके फर्श में टाइल्स लगाया गया है।

और इस गैरेज में दो मोटरसाइकिल खड़ी है।

जिस काउंटर पे पेन और कॉपी रखा हुआ है और एक डिब्बे का सामान रखा हुआ है।

यहां एक सोना चांदी का दुकान लग रहा है।

दुकान में बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ है।